जिसमें मधुर-मधुर संगीत हम सुन सकते हैं।

ये क्रिकेट का मैदान है क्रिकेट का मैदान में दो तीन ठो इस्टम लगे हुए है और सफ़ेद रंग के चोक से उसमें--

है ये आदमी सवारी के--

ये एक गाड़ी है जोकि गाड़ी चुरा चूर हो गया है ऐसे लगता है की बुरी स्थिति में है और यह एक्सीडेंट हुआ है किसी ये गाड़ी गैरेज में बनने के लिए आया है जोकि बनना असंभव है बहुत इस की हालत दयनीय हो चुकी है।

जो कि पीले कलर में और थोड़ा कॉफी कलर में यह डाइनिंग टेबल का कलर है ।

चार पांच आदमी उसको उसके पीछे खड़े हैं सामने पंख एक बिल्डिंग है जिसमें लोग बहुत से खड़े हुए हैं और ऑरेंज कलर का --

यह शाम का समय है जहाँ पर लाइट भी जल रहा है बहुत ही सुंदर दिखाई देते है पेड़-पौधे जहाँ--

ये एक रेस्टोरेंट है जहां पे चार-पांच खुशियां लगे एक आदमी है टेबल के ऊपर ग्लास और प्लेट लगा हुआ है सावरिया रेस्टोरेंट --

रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

भी यहां पे हरे भरे हैं कोई भी यहां पे आस-पास नहीं खड़ा हुआ है।

भारत बस है और ये चौकी बांधा मोहला यहां जाती है जो कि पीला कलर से पोताई किए गए और खूब बड़ा बस है इसमें कुछ यात्री भी बैठे हैं।

ये बस चौकी बांधा मोहला आदि स्थानों पर जाती है जो भारत का नंबर वन बस कहलाता है।

दो लड़के सफ़ेद कलर के टीशर्ट पहने और ब्लैक कलर के लोवर पहने और दो हरे कलर के--

टी-शर्ट पहने हैं ब्लू कलर के लोअर पहने हैं ये मैदान बहुत ही सुंदर दिखाई देता है जो कि हरा भरा है ।

एस_बी _आई बैंक है यहाँ पे पैसा निकाला जाता है एक आदमी खड़ा हुआ है बहुत सी गाड़िया है और गेट खुला हुआ है एक लाइट भी लगा ऐ_सी भी लगा हुआ है बाजु में बड़ा सा खिड़की है लोग यहाँ पे आ जा रहे--

ये माता रानी यहां पे बैठी हुई है और कुछ लोग यहां पे पास में बैठे हैं एक फंडा दिखाई दे रहा है माता को माते के आसपास बलून है।